तेने धोती धोती कुड़ता पहन के और यंग भी है लेडीज भी यहापे --

यहाँ पे पहाड़ बहुत सारा है और यहाँ पे झरना भी गिर रहा है पहाड़ो पे पेड़ --

तंबाखु वंभाकू सब कुछ मिलता है दो ग्राहक खड़े हुए भी है और बाहर बाल्टी एक रखा है।

और दिवार दिख रहा है एक छोटासा खिड़की दिख रहा है उसको बोलते है रोशनदान और लाइट भी यहापे --

और खंबा लगा हुआ है लोखंड का उपर खड़े हो हुए है दो तीन लोग वर्कर लोग --

दरिया में नमक गिराना यहाँ पे है ये किराना स्टोर है।

यहाँ भी मकान बन रहा है और जो हे दो महले का है खिड़की बड़ी बड़ी है यह गेट भी है।

ये वर्कर लोग काम कर रहे हैं और यहां पे एक वर्कर दिख रहा है।

दूर दूर तक कुछ भी दिख नहीं रहा है पानी और फिर आसमान दिख रहा है वाइट कलर में--

लेडीज जेंट्स बैठा हुआ है और दूसरे पर लेडिज बैठी हुई है और सब पेंटिंग टंगा हुआ है यहां पे लाइट --

यहां पे जंगल है जंगल में झूला वूला बना हुआ है और बैठने के लिए भी --